अगल बगल बीच जैसा माहौल है नदी--

ये कुछ रिसेपनिस रिसेप्शन हो रहा हे ऑटो मोबाइल की तरफ से सन् दो हजार तेइस में और यहाँ एक गाडी उधर से आ रही हे जोकि फॉर व्हीलर कार है वाइट वाली.

हेलो दोस्तों इधर स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो दो लगा है योगिनर लगा है सब पुलिस लोग हैं बंदे लोग सब देख रहे हैं कुछ हो रहा है.

मतलब गाड़ी वाड़ि सब लगा है.

ये फेविकोल का डब्बा है ब्रगुना है और पेंट का डब्बा है फेविकोल है.

और सभी मतलब की सेल फोर है फेविकोल सेल है.

प्लास्टर भी घर नहीं हुआ है अभी ऐसी निवास होगा अभी इधर में वायरिंग हो रहा है.

नजारा से मस्त लागत हो हमारा --

हाँ तो हेलो दोस्तों मिक्सी की दूकान हे मिक्सर मशीन मसाला वसाल पीसते हे बेग वॉग लगा हे उधर इधर कपड़ा फ्रेश करने वाला पंखा वंखा सब लगा हे काउंटर मस्त दिखा रहा हे नजारा मस्त एकदम लग रहा हे हमको.

हाइबरेड मछली है। कुछ आ लग रहा है हमको हाइबरेड मछली है ऊपर से लाइट बर रहा है।

नजारा मस्त लग रहा है हमको तो --

हां तो दोस्तों इ बाडी सी जाली है अंदर चिता भूत डरावनी सी चीज है लग रहा है हमको दिखा रहा है आगे से.

मतलब मस्त लगला केवाड़ी वाड़ी मस्त है पेंट वगैरह मस्त है अथी टाइस वाइस सभी बिछावल है नजारा तो हमको मस्त लग रहा है एकदम।

हेलो दोस्तों इधर फंक्शन हो रहा है.

एक मस्त पार्टी वाटी चल रहा है।

हेलो दोस्तों यह वाशिंग मशीन बनता बना रहा है मस्त लग रहा है हमको वाशिंग मशीन अभी बना रहा है रील से --

बताऊ मस्त दुकान चली इसको--

वेल्डिंग बेल्डिंग मस्त देखा रहा है हमको मस्त एकदम.

नजारा में बहुत मस्त बहुत मस्त लग रहा है कोई दिक्कत नही है।

ये एक मैदान जिसके मे बोहोत योगा हो रहा हे बोहोत मस्त हे लेकिन लोग स्वस्थ रहेंगे और --

चार पांच को पंखा टांगल है मस्त घर के लुक मस्त दिख रहा है हमको कोई दिक्कत नहीं है घर में.

बहुत मस्त लग रहा है हमको घर कोई दिक्कत नहीं घर में.

बहोत मस्त घर है कोई दिक्कत नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं घर मस्त है तो.

हेलो दोस्तों इत टाइस वाइस बिछाला हे मस्त घर मे हे लकड़ी के सोफा हे पीछे लग रहा हे एक --

लकड़ी की सोफा है एकदम मस्त दिखा रहा है हमको.

सब गलत हेलो दोस्तों ये गढ़वा के गायत्री मेडिकल हे मतलब स मस्त दिखा रहा हे हमको लेकिन वो सब जानवर के हे.

मतलब इअ भगवान इसको दया करे की मस्त दुकान चलेगा.

खराब ही नही दिख रहा हैं.

पंखा का वायरिंग वायरिंग जोड़ने वाला है मतलब उसको पार्ट दुकान है पार्ट दुकान कहते हैं।

मस्त है कोई दिक्कत नहीं है.

बस फेस नहीं दिख रहा है वही यह बांसुरी--

और सब कुछ अच्छा हे.

और कुछ सेल्फी या फोटो ले रहे हैं लोग.

लोगो का एक पेड़ दिख रहा हे बड़ा सा और चेर दिख रहे हे.

ऐनी कार सर्विस लिखा हुआ हे.

यहाँ पे शादी का अरेंजमेंट हो गया हो चूका हे और ये दिख रहा हे परदा दिख रहा हे चारो तरफ से हम--

बन्दे लोगो को काट रहा हे करियात जैकेट पहनलेवा लेकिन मस्त दिख रहा हे.

नजारा मस्त हे गाडी गुड़ी मस्त हे घर मस्त हे बोहोत.

अ गुलाब के लग रहा हे फूल का तड़े पहचान रहे हे अब क्या कहे मत बहुत मस्त हे.

चलता रहे ऐसी फूल सुगंध लेने रहे हैं हम.

वह कूलर उलर रखा है.